छत के में ए_सी भी लगी हुई है एक यहां पर बॉलीवुड का स्टीकर का पर्चा लगा हुआ है और छत में पर स्टिकर्स लगे हुए हैं।

कांच का सामान रखा हुआ है कुछ रबड़ का सामान रखा हुआ है।

सफेद कलर के चौड़ा पजामा पहने हुए खड़े हैं और इसकी दीवारों में टाइल्स लगाई हुई है और उनके साथ गुब्बारे भी यहां पर लगाए हुए हैं।

हमें काफी बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं और एक यहां पर खंबा दिख रहा है जिससे तार जा रहे हैं और यहां मैदान में --

बड़े बड़े पेड़ बने हुए हैं और--

यहां पर एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी है।

और अंदर जाने के लिए कांच का गेट है और उसके आगे कुछ व्यक्ति खड़े हैं एक भाई साहब में चेक शर्ट पहन रखा है एक ने सफेद शर्ट पहना हुआ है।